यहां पे अनेक प्रकार के लाइट लगाए गए हैं।

यहां पे बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

यहां पे एक स्कूटी हरा कलर का है एक स्कूटी लाल कलर का है।

जिनके सामने एक फ्रिज भी है जोकि फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक रखा गया है।

यहां पे सीढ़ी भी बनाई हुई है जो कि दोनों तरफ से रेलिंग लगाया गया है।

यह एक कंपनी का दृश्य दिया गया है यहां पे तीन मजदूर हैं।

नीचे में टाइल्स मारा गया है।

ये एक स्कूल का दृश्य है यहां पे एक बाइक लगा हुआ है।

उनके बगल में एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है यहां पे एक पेड़ भी है।